और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं येलो येलो स्मॉल स्मॉल --

ये एक बहोत ही सुंदर सा तस्वीर देख सकते है आप जो पानी भी एक साइड और एक साइड रास्ता है लोगो को आने जाने के लिए बहोत ही अच्छा--

हेलो गाइस ये देख सकते हैं आप बहोत ही सुंदर सामने चित्र में आपको दिख रहा है रेड कलर का घर है।

और आगे ब्लैक कलर की कार लेफ्ट साइड में खड़ी है।